एक टीचर खड़ी है एक टीचर खड़ी है जिसने येलो कलर की साड़ी डाली हुई है।

ये एक लोहे की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारा लोहा वगैरह रखा हुआ है मशीनस भी रखी हुई हैं।

और तीनों औरतों ने साड़ी पहनी हुई है।

आलू टमाटर और गाजर भी रखी हुई है बैंगन पड़े हुए यहां पर लौकी भी रखी हुई है।

ये एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के ऊपर जहां लिखा हुआ है नो स्मोकिंग --

और बहोत सारे लाइटें फ्लावर भी लगे हुए हैं।

बैंक के साथ ए_टी_एम भी बना हुआ हैं।

दुकान के बाहर बहोत सारे आलू रखे हुए हैं टोकरी में और प्याज भी पड़े हुए हैं।

और बहुत सारे चेयर्स टेबल भी रखे हुए हैं।

ये एक मॉल है मॉल के अंदर टेबल के ऊपर पानी की बोतलें रखी हुई हैं।

यहां एक केबिन भी बना हुआ है टेबल के स दो चेयर्स भी लगी हुई हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं यहां पर।

और भी बहुत सारे लोग यहां पर--